इत लगता कि स्टेशन स्टेशन बा कुल सीढ़ी वीढ़ी से चढ़े खातिन कुल बनल बा उ साइड जाय खातिन।

मोनियम बा दिखत हई। कुल झोला ओला भी लाल रंग के लखल बा बिड़कुल अ फेंटा एन्टा के बोटल भी रखल बा गिलसवओ दिखत बा हमके। फेर लकड़ी अकड़ी भी कुल रखल ह देखत हाईन्।

और कुल पौधा वोधा भी लगल ह| फिर अंदरवा कोई कुर्सी उर्सी भी हमके लोकत ह| एको बच्चा हमके दिखत ह एमे।

और कुल पेड़ वेड भी हरा हरान् के लउकत बा और एकदम आसमान भी कितना सुन्दर नीक लगत है।

लागत ह की कोनो के बरात के शाद शादी के वो गाड़िया बा कुल सजल बा फूल उल से एकदम बड़ा नीक लाल रंग केपीला रंग के गुलाबी रंग के फूल से कुल सजल बा पत्ती उत्ती से भी सजल ह।

इ त देखत हइ कि कुल दुगो बाइक लोकथा ह एकदम जंगल वंगल के एरिया बा कुल एकदम चारो तरफ कितना हरियाली ह कुल पेड़ वेड़ लौकत बा फिर पानी भी बा बीच में --

क दुगो गदहा लउकत ह। त् सामने बच्चन के खेले ख़ातिन कुछ बॉल वॉल भी दिखत --